यह बहुत बड़ी जगह है सामने बहुत बड़ा मंदिर है बाहर रोड पर खूब सारी गाड़ियां चल रही है और कुछ लोग भी खड़े हैं एक टेंपो भी है।

जोकि खूब सारे हैं यह एक दुकान है यहां पर बहोत सारा सामान पड़ा हुआ है।

यह एक मंदिर है सामने एक मूर्ति बनी हुई है पास में बहुत पास में दिए जल रहे हैं।

खूब सारे शैंपू पड़े हैं यहां पर खूब सारा सामान है सामने कपबोर्ड बने हुए हैं कपबोर्ड के अंदर सामान रखा हुआ है।

पार्लर है यहां पर एक लड़की बैठी हुई है जिसका काम हो रहा है ये बहुत बड़ा सैलून है सैलून में खूब सारा सामान पड़ा है सामने एक बच्ची बैठी हैं।

यह एक जगह है यहां पर अलमीरा है अलमीरा के अन्दर सामान पड़ा है और बाहर दो ताले लगे हुए है यह एक बहोत बड़ी जगह है।

ये एक सड़क है सामने बस है पास में बहुत सारी ऑटो खड़ी है और कुछ लोग भी खड़े हैं पास में एक चाय की दुकान है।

यह एक जगह है यहां पर खूब सारा सामान पड़ा है यहां पर--

यह एक जगह है सामने बहोत बड़ा टेबल रखा है उसके पास में सामान भी है यह बहोत बड़ी जगह है सामने लोग भी खड़े है।

यह बहोत बड़ी जगह है सामने एक बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं सामने लोहे के टीन बने हुए हैं पास में एक ह एक पेड़ हैं उसके अंदर कुछ लोग भीं बैठे हैं।